एहा ईहा मसीह और ओकर मा का मूर्ति हावे।

यह डी ह- येहा रहेबर आजकर बिल्डिंग हावै लेकिन एँमें जो डिज़ाइन बने येहा प्राचीन काल का बिलकुल एकदम बारिक दीजाईन लगत ह।